मुझे इस फोटो पर स्टेट बैंक ए_टी_एम स्टेट बैंक ए_टी_एम का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

ये इस फोटो पर एक घू--